सामने अंकल वाला लगाए हैं जिस्ट राइट साइड मे मिक्की माउस रखा है ग्लास रखा है रेड कलर के चेयर्स दिख रही है।

ये रूम का दरवाजा रखते है हम- म रेक बनवा के अलमारी टाइप से बना हुआ है जो लकड़ी का है।

इस फोटो मे एक बड़ा सा मॉल टाइप से दिख रहा है जिसमें वासिंग मशीन दिख रहे हैं।

ये खंभे में लाइटिंग की व्यवस्था की गयी है जिसका लाइट जल भी रहा है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है नीचे सीढ़ियां दिखाई दे रही है और ये राइट साइड में लाइट के छोटे- छोटे लैंप लगे--